यहां सामने में मुझे एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और कुछ जिम की मशीने दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है और येलो कलर की है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ अलमारी जैसा दिखाई दे रहा है।

और एक बड़ा सा पोल दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है जिसमें कुछ लाइटे लगी हुई है और कुछ साइकल दिखाई दे रहे हैं।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

अब बहोत बड़े बड़े बैनर दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर के है जिस में रेड कलर से लिखा हुआ है और एक ब्लैक है जिस पे वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

इसमें वाइट और ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो सामने में खड़े हैं।

यहां पर मुझे कुछ औरत और लड़कियां दिखाई दे रही है जो योगा कर रही है।

और एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।

और एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है जो व्हाईट कलर का है और रेड कलर का है और कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ घरें दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है और वाइट कलर की है और येल्लो कलर की है और मिट्टी कलर की है।

यहाँ पर मुझे कुछ बड़े बड़े चट्टानें दिखाई दे रही हैं जो पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और ब्लैक कलर का है।

यहां पर मुझे कुछ कांचे रखी हुई दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है जिस--

के ऊपर कुछ तस्वीर रखे हुए हैं जो बहोत छोटे हैं और भगवान के हैं।